प्लेट रखी हुई है ब्लू कलर की कुछ पन्नियाँ रखी हुई है सामने एक आदमी है जोकि एक क्रीम कलर की और एक आ औरत है जोकि दुपट्टा डाले हुए है और कोई सब्जी --

उसमें एक व्हाइट कलर की टॉप है उसमें एक अ रेड और ब्लैक व्हाइट कलर के फूल बने हुए है नीचे तीन बटन लगे हुए है।